कलर के है फिर ऊपर में पत्थर के छते बने हुए है नीचे का पक्का बहोत पुराना लग रहा है साइड एक खिड़की है जो खुला हुआ है आधा--

के बाहर में शॉप के बाहर में खड़े हुए है फिर एक आदमी हेलमेट लगया हुआ है जो ब्लैक कलर के एक औरत है जो शूट --

कलर का छाया में दिख रहा है फिर एक छोटा सा ग्राउंड है फिर और छोटा सा नाव है जो चल रहा है थोड़ा दूर में है सूर्य है जो हल्का ऑरेंज कलर दिख--

ये इमेज में मुझे एक बस दिख रहा है जो भू भू बस है फिर वो येलो कलर का है इसमें तिरंगा का छाप है जो छोटा सा बना हुआ है फिर नंबर प्लेट --

इस इमेज में मुझे प्लेग्राउंड दिख रहा है जहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे है एक आद एक बच्चा ब्लू कलर का मौजा ऊपर पहना हुआ हैं टी शर्ट --

उस पार जो जमीन दिख रहा है जो ब्राउन कलर का दिख रहा हैं फिर जमीन उस पार छोटे-छोटे पैर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

स्कूटी चला रहे है अ बग बग बहुत सारे वाइट कारे दिख रहे साइड में बहुते बजारे उजारे कुछ ख़रीदारी कुछ बिक रहे--

दिख रहै है साइड में बड़ा सा बिल्डिंग हैं और दूर - दूर सिर्फ ब्लैक एंड लाइट चीज दिख रहै हैं।

की आगे कुछ आरो टाइप का ट्रायंगल टाइप कुछ बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ रॉड लगे हुए हैं।